सामने पे कई सारे आदमी दिख रहे है एक डी.जी. दिखाई दे रहे है सामने पे कई सारे गाड़ियां दिखाई दे रहे है ऊपर में कई सारे --

नीचे में लाल काल के में दरी दिख रहे हैं सामने पे कई सारे फूल दिखाई दे रहे हैं और सामने पर अलग-अलग रंगों के दरी दिखाई दे रहे हैं ।

ऊपर में लाइटें दिख रहे हैं दो लाइट दिख रहे हैं और कई सारे अलग-अलग रंगों के टेबल दिखाई दे रहे हैं नीचे पे दो गाड़ी दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे।

सामने पे कई सारे एक मोटू के कार्टून दिख रहे हैं और एक खरगोश के दिख रहे हैं। सामने पे कई सारे फूल दिख रहे हैं।

फिर सामने पे एक चदरे का घर दिखाई दे रहे है उसपे गेट दिखाई दे रहे है और सामने पे काला बोर्ड मे व्हाइट कलर के लिखे हुए --

कई सारे आदमी दिख रहे हैं कई सारे दुकाने दिख रहे हैं सामने पे और और सामने पे बड़े-बड़े घर दिखाई दे रहे हैं।

फिर कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर में एक टावर जैसे दिखाई दे रहे हैं फिर घर के छोटे-छोटे खिड़की दिख --